साइड में कांच का डब्बा रखा हुआ है।

लाल सफेद अलग अलग रंग का लाइटिंग लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग है यहाँ ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है।

बगल में बहुत सारा पेड़ है जो हरा भरा है।

एक ऊपर में पंखा भी लगा हुआ है उसके बगल में एक गाड़ी है।

एक लैपटॉप भी रखा हुआ है ऊपर में दीवाल में टी_वी दिख रहा है।

ज भगवान जी का मूर्ति है। यहां तीन पंडित बैठा हुआ है।

बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

यह वेलकम लिखा हुआ नीचे लाल कलर से है बगल में बहुत सारा खम्भा है।

यह श्री दुर्गा भंडार है यहां बहुत सारा कुरकुरे चिप्स का पैकेट टंगा हुआ है।

साइड में पानी भी दिख रहा है।

दूवरी लड़की खड़ी है। एक लड़की चश्मा पहन के है।

दिवाल में बहुत सारा बैलून लगा हुआ है।

नीचे सब ब्लू हरा कलर का बिछाया हुआ है।

यहां बहुत बड़ा जमीन है बीच में रोड गया हुआ है।

यह एक दुकान है यहां लक्स कोजी लिखा हुआ पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारा सलाद भी रखा हुआ हैएक पानी का बोतल है।